ये झरने से पानी लागतार बह रहा है।

इसे पानी टकरा के नीचे आ रहे हैं।

निचे आई लव रांची लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक हॉस्पिटल दिखाया गया है।

जिसमें एक आदमी ब्लू रंग का जैकेट पहना हुआ है।

इस फोटो में दो ए_टी_एम दिख रहे हैं।

पहला आंध्रा बैंक का और दूसरा एक्सिस बैंक --

जिसमें लोग पैसे निकाल रहे हैं।

और ए_टी_एम के ऊपर एक जेरॉक्स दुकान है।

इस फोटो में एक स्कूल ग्राउंड को दिखाया गया है।

हर तरह के खेल खेल रहे हैं।

सामने एक पेप्सी का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे कांच के बोतलें हैं।

नीचे एक बजाज का शोरूम है।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

पासी में एक गुलाब फूल है जो की लाल रंग का है।

और पास में एक झंडा है जोकि लाल रंग का है ।

यह फोटो बैंक ऑफ़ बड़ोदा ऑफिस का है।

में ऊपर बहुत सारे गुब्बारे टंगे हुए हैं।